डंबल्स को यूज कर सकते हैं इन बेंचेस पर बैठ के और बहुत सारी ट्रॉफी से इस टीम के ओनर के पास--

यह एक वॉकिंग प्लेस है जो कि टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बनाया गया है इसमें बहुत सारी सीढ़ियां है और साथ ही--

यह एक बेकरी की दुकान है जिसका नाम है साहागिर बेकरी इस बेकरी की दुकान पे विभिन्न प्रकार के टोस्ट एम्म बिस्किट्स --

ये एक सबजी की दुकान हे जिसपे बहत सारी हरीभारी सबजी उपलब्द हे इस दुकान पर टमाटर आलू भेंड़ी--

इस पर आसमान एकदम नीला दिखाई दे रहा है एवं उस श्वेत बादल छाए हुए हैं।

बस के किनारे से गुजर रहा है साथ ही इस बस के पीछे एक ऑटो लगा हुआ है जिस पर कुछ व्यक्ति चढ़ रहे हैं।

इस ढाबा पर धूम्रपान धूम्रपान निषेध लिखा हुआ है।